फील्ड में हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी साइकल्स पड़ी हुई है ऊपर लाइटस लगाए हुए है और साइकिल पे बहुत सारे आदमी लोग बेठे हुए हैं और ये लोग मास्क पहन कर हैं एक आदमी ने अपने हाथ में गिटार लिया हुआ है |

दोनो बाहर है ऊपर से बड़ा सा पत्थर है उसके बगल में कुछ छोटा सा पड़ा हुआ है घांस अ के ऊपर कुछ है नारंगी कलर का गिरा हुआ है।

छे कुछ महिला है जो महिलाये है जो आपस में बात कर रही हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पेड़ पौधे भी हमें दिखाई दे रहें है।

पीछे एक पोस्टर लगा है जिसमे वेलकम लिखा हुआ है इसने अच्छे से अपने आप को सजाया है और ये डांस कथकली करके दिखा रही है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है की ये एक घर है यहाँ पे सजावट की गयी है दो लड़के नाच रहा है और पीछे एक पेंटिंग भी लगी हुई है और नीचे छोटे छोटे बेठने के लिए कुछ बास्केट्स भी है।

और अंदर जाने की लिए लोग बेठे हुई हे।